अम मतलब लॉन्च टाइप दिख रहा हैं लॉउन्च --

लेडीज खड़ी है नीचे बगल में एक बुलेट बाइक भी खड़ी हुईं हैं।

हमको इसमें एक विंडमिल दिख रही है।

खजूर के पेड़ दिख रहे हैं और हमको इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल--

हल भी आ रहे हैं बगल से घास से सड़क निकाली गई है।

इसमें हमको ये बीस सेकंड की रिकॉर्डिंग का क्यों पता नहीं कर रहा है दो मिनट बीस सेकंड हो चुके हैं।

एंट्रेंस है जो बहोत ही सुंदर सजाया गया है लाइट पडने से और भी सुंदर लग रहा है।

एक क्राइटेरिया और होए जा रहा है हमको इसमें देखके--

वो हमको इसमें एक डूबता हुआ इंसान भी दिख रहा है जो डूब रहा है पानी के अंदर।

सामने से खरीद के पैसा दे के वो जाने लग रहा है।

इसमें डेकोरेशन खूब प्यारी सी हुई है।

ये हमे एक क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है जिस क्रिकेट ग्राउंड मे क्रिकेट खेला जाता है।

एक बोलेरो खड़ी है बोलेरो के नंबर --

किसी ने ये सेल्फी खींचकर हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी।

गेरा बारह तेरा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह--

जिसका इंजन बहोत ही टाइट होता है अच्छा इंजन होता है और बहोत ही अच्छी चलती है।